ताकि मै यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत बडा जंगल है यहाँ पर छोटी - छोटी घास उगी हरे - हरे रंग कि आसमान सफेद रंग का है और यहाँ पर पानी --

जैसा कि मै यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी बस है जो की सफ़ेद रंग की है आसमान सफेद रंग का है यहाँ पर एक यहाँ पर ऊपर टिन है।

जैसे की मै यहाँ देख पा रही हू केक एंड बेक है तथा यहाँ पर बहोत बड़ी दुकान है जो कि निल काले रंग का बोर्ड लगा हुआ है उसमे सफेद रंग कि लाईट जल रही है अंदर एक --

जैसा की मै यहाँ देख पा रही हू यहाँ पर रात्रि का समय है तथा है यहाँ पर जो जमीन है वो भुरे रंग कि है और बो एक आदमी बाईक पर बैठा हुआ है बहोत सारी--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

यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है जो की सफेद रंग कि है दिवार पे मशीने लगी--

दिवार मे छोटी - छोटी पिली तथा हरी यहाँ पर घास उगी दिख रही है एक जगह और इसका ये गेट टाईप मे बना हुआ है।

काले रंग कि आसमान सफेद और काही रंग का है तथा यहाँ पर एक आदमी झोला लेकर जा रहा है सफेद रंग का इसमे--

सारे लोग खड़े हुए है तथा यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो पिले रंग कि है ऑटो गाड़िया खड़ी हुई है यहाँ पर रिकसे वगैरह--

पीले हरे गुलाबी रंग के लगे है सफेद रंग की लाईट लगी है टिन लगी है जमीन जो है कालीन बिछी है निले रंग कि यहाँ पर --

जिस कांच कि ये बनी हुई है इसमे भुरे रंग कि लकड़ी लगी हुई है तथा यहाँ पे गुलाबी रंग--

उसकी वैक्सीन है पिछेकी दिवार सफेद रंग कि है बगल मे भी समान है।

और यहाँ पर भुरे रंग कि हैं रात्री का समय है बोर्ड बोहत बड़ा सा लगा हुआ है और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं एक सीढ़ी रखी हुई हैं।

और जमीन स आ दिवार सफेद रंग कि है भुरे रंग कि है बहोत सारे लोग खड़े है जमीन सफेद रंग कि है तथा यहाँ पर लाईट --

जैसाकी मै यहाँ देखपारही हू यहाँ पर झुले लगे हुए है। और यहाँ निले सफेद रंग का आसमान सफेद रंग का जो सामने की दिवार भुरे रंग कि--

जैसा कि मै यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर ये छत है जो की यह सरिया वगैरह डली हुई है तथा यह भुरे रंग कि है ये काली रंग कि है और पीछे पेड --

दुकाने बनी हुई है छोटी -छोटी लाईटे जल रही है बोहोत सारे लोग खड़े हुए है तथा यहाँ पर बोहोत सारा सामान बिखरा है इसमें --

और यहा रैलीन बनी हुई है और छोटे छोटे कड़ बने हुए है बड़े - बड़े यहाँ पे पिल्लर खड़े है इसमे टावर जोकी लोहै का है ।

इत्यादी खड़ी हैं सामने जो बिल्डिंग है वो निले रंग कि सफेद रंग कि पिल्लर खड़े है और यहाँ पे सब गाड़िया खड़ी हैं क्यूंकी हिन्दुस्तान का बैनर लगा है।

जैसा की मै देख पा रही हु यहाँ पर एक पेन्सिल रबर की दुकान है यहाँ पर एक आदमी पेन दिखा रहा है तथा उसने चेकदार शर्ट पहनी है काउंटर --

भूरे रंग का दिवार यहाँ पर दिवारों मे अलमारी लगी है अलमारी में बहोत सारी काफी किताबे लगी है।

पल्स्टिक के पाइप और यहाँ पर बहोत सारे टंकिया रखी हुई है बच्चोने काले रंग के कपडे पहने है और जीन्स पहनी है। जमीन--